इसमें एक येलो कलर का पैंट नजर आ रहा है और एक ब्लैक पे ब्लैक कलर का पैंट भी दिख रहा है।

तस्वीर में एक ट्रेन खड़ी हुई है।

यह तस्वीर लाइब्रेरी का नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे कप दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज के अंदर बहोत सारे लोग एक कैफे में बैठे हैं।